और एक स्कूटी भी है और राइट साइड में हाए बहुत सी बेंचेज लगी दिख रही है।

टेंट येलो कलर के है आगे एक टेंट पिंक कलर का भी है।

क्लासरूम के आगे व्हाइट बोर्ड है क्लासरूम येलो कलर की दीवालो का है ऊपर सीलिंग में व्हाइट लाइट्स लगी हुई है।

इस फोटो में मुझे एक दुकान दिख रही है जिसपे किंग एंड क्वीन लिखा हुआ है।

और गेट के आगे एक बिल्डिंग भी दिख रहे और राइट साइड में और बड़ा पेड़ भी दिख रहा--

आ अन अंजा स्टील फर्नीचर लिखा हुआ है।

पीछे एक दुकान पे रेड बैनर में फोर जी लिखा हुआ--

मुझे एक झरना दिख रहा है। जहां पे पानी बहोत ऊपर से नीचे गिर रहा है।

और यह नीचे गुजराती में और भी चीजें लिखी है।

और अब यहाँ पे बहोत से लोग दिख रहें हैं।

उसने भी कप पड़ा हुआ है और सामने कुछ बिस्किट जैसा रखा हुआ है।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोअर का फोटो दिखा है जिसमें एक बोर्ड पे हमें बहोत सारे इलेक्ट्रिक सॉकेटस दिखाया है।

लेफ्ट साइड में और भी इलेक्ट्रिकल चीजे रखी दिखाई है राइट साइड में एक फैन भी दिख रहा है जिस पे अ पॉलिथीन लगी हुई है।

अह जहां पे आह राइट साइड मे वो एक बड़ा सा बलून वाला झूला है जहां पे बच्चे खेलते है --

और पीछे एक इंसान है जिसने रेन कोट पहना हुआ है हेलमेट लगाया हुआ है।

और वो कुछ तो काम कर रहे हैं और राइट साइड में एक बिल्डिंग जैसी भी हैं जहां पे बोर्ड लगा हुआ हैं।

बीच पे एक लड़की भी है और ये सब लोग पूजा कर रहे हैं।

और आस-पास घा घास है और ऊपर खुला आसमान है।

इसमें एक दुकान दिखाएं हुए हैं और दुकान में बहुत सारा खाने का सामान और अअ रोज का सामान रखा हुआ है।

और वॉटर पानी ऊपर से बहुत गिर रहा है और बीच में पेड़ पौधे दिखाए हुए है बड़े बड़े पेड़ हैं।

इसमें हमें एक इंसान दिखाया हुआ है जिसने सफेद शर्ट पहनी है और ये फूलों के बीच में खड़ा हुआ है।

और यह तो पौधे में फूल है येलो पिंक और ऑरेंज कलर के।

पीछे वाइट और ब्लैक बैलून से डेकोरेशन किया हुआ है राइट साइड में एक रेफ्रिजरेटर है जिस पे स्किन लिखा हुआ है और उसके नीचे बॉटल्स दिख रही हैं।

और ये जो रूम है यहां पे फर्नीचर वुडन कलर का है और सीलिंग येलो कलर की है।

ये एक शहर की फोटो है जहां पे छोटे-छोटे घर दिख रहे है।

और लेफ्ट में एक इंसान जिसका शर्ट दिख रहा है काला सा।

दरवाजा के आगे कुछ अह लकड़ी का रखा हुआ है लोहे का अलमारी भी रखा है।

और अलमारी पे लॉक लगा हुआ है और जो दीवार है वो येलो कलर का है।

अह और कुछ लोग भी बीच पे खड़े हुए हैं जो कपड़े पहने हुए।

और आ आगे फ्रेंच लिखी हुई है गोल्डन कलर की राइट और लेफ्ट साइड पे --

और उसके आस-पास अअ अ जाली फैंस लगाई हुई है और पीछे एक घास है।

उसके आसपास पेड़ भी है और गोल पोस्ट भी दिख रहे हैं मुझे व्हाइट कलर के।

इसमें एक बोर्ड दिखाया हुआ है बोर्ड पे दक्षिण गुजरात विज को लिमिटेड लिखा हुआ --

लेफ्ट साइड में यहां पे अह एक वाइट स्कूटी दिख रही है मेरे को।

इसमें हमे दुकान दिख रही है दुकान पे कलर आईडियाज इस अमर पेंट्स लिखा हुआ है।

बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे एक दुकान है हैवेल्स की दुकान है।

जहां पे अ राइट में मेरे को लोग दिख रहे जो पैंट शर्ट पहन के खड़े हुए हैं एक दरवाजे के सामने --

अपने अह व्हाइट ड्रेस से और पास मे केचअप और ऑरिगेनो रखा है।

और एक व्हाइट बोर्ड भी है जिसपे अ प्रोजेक्टर से कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है।

इसमें मुझे एक दुकान दिख रही है दुकान में मुंदरा स्वीट एंड फरसान मार्ट लिखा हुआ है।

ने दुकान दिखाई है जिस पे शिव शक्ति ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

अह मीनार कहते हैं उन्हें और पीछे एक बिल्डिंग भी है सफेद कलर की।

इस फोटो में मुझे कुछ लोग दुकान के सामने अ सीट पे बैठे हुए दिख रहें।

और एक औरत है एक आदमी और एक लड़का बैठा हुआ है।

ऊपर मंडप बांधा हुआ है जो पिंक और व्हाइट कलर का है।